how to create a library in koha पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम लाइब्रेरी बनाना और ग्रुप बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स operating system 1604
और koha version 1605
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
शुरू करते हैं मैंने पहले ही अपने system पर koha संस्थापित कर दिया है
koha interface पर जाते हैं
संस्थापन के समय दिए गए username और password का उपयोग करके koha में log इन करें
मेरे system में मैंने username koha underscore library दिया है
अब password type करें जिसे conf xml file में दिया गया था
koha का मुख्य पेज खुलता है
ध्यान weजब koha की setting करते हैं हमें प्रत्येक branch library की जानकारी डालनी चाहिए जिसे हम koha में बनायेंगे
इस data का उपयोग बाद में koha के कई क्षेत्रों में किया data है
add एक now library बनाते हैं
koha interface पर वापस जाएँ
home पर जाएँ और koha administration पर click करें
basic parameters को देखें
libraries and groups पर click करें
नई library को जोड़ने के लिए + new library टैब पर click करें
हम अभी के लिए groups section को skip करेंगे
इस पेज में ध्यान दें कि लाल in में चिह्नित सभी fields अनिवार्य हैं
अपनी library के लिए fields library code और name भरें जैसा कि मैंने यहां किया है
ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैंlibrary code में space नहीं होना चाहिए
और यह 10 अक्षरों से कम होना चाहिए
इस code का उपयोग database में एक अलग पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा
अगला section वह है जहां हमें अपनी librarys का संपर्क विवरण भरना होगा जैसे
मैंने यहां दिखाए गए अनुसार विवरण भर दिए हैं
यदि आपके पास सूचीबद्ध किसी भी field की जानकारी नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें
इसी प्रकार इस पेज पर अपनी librarys के विवरण भरें
address और phone विवरण का उपयोग बाद में आपकी library के लिए custom notices बनाने के लिए किया जा सकता है
सदस्यों द्वारा इन विवरणों का उपयोग भी किया जा सकता है जब वे library से संपर्क करना चाहते हैं
email id field अनिवार्य नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं
हालांकि आपके द्वारा बनाई गई library के लिए email id होना बेहद महत्वपूर्ण है
यह email id है जहां से सदस्यों को notices जाते हैं और आते हैं
gmail id बेहतर है क्योंकि इसे mail भेजने और/या mail प्राप्त करने के लिए आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है
email id field के नीचे हमारे पास replyto और returnpath fields है
replyto यदि आप notices के सभी उत्तरों के लिए एक और default email address निर्दिष्ट करना चाहते हैं तो आप इसे यहां कर सकते हैं
मैं replyto email id में stlibreoffice @gmail com भरूंगी
यदि यह खाली छोड़ दिया गया है तो सभी उत्तर जवाब उपरोक्त दिए गए email id पर जाएंगे
returnpath पर आएँ यह email address है जहाँ सभी बाउंस messages जाएंगे
यदि यह खाली छोड़ दिया गया है तो सभी बाउंस messages ऊपर दिए गए email id पर जाएंगे
तो मूल रूप से तीन अलगअलग email ids का उपयोग किया जा सकता है
email id
replyto और
returnpath
हालांकि यदि केवल एक email id प्रदान किया जाता है तो default रूप से koha इसे सभी तीन fields के लिए उपयोग करेगा
फिर field में अपनी library का url डालें जैसे मैंने यहाँ किया है
url field भरने पर विशेष library का name opac पर holdings table में जोड़ा जाएगा
इसके बाद हमें opac info भरना होगा
यह वह जगह है जहां आपको अपनी library के बारे में जानकारी देना है
मैंने यहां अपनी library के बारे में कुछ जानकारी प्रविष्ट की है
यह जानकारी opac में दिखाई देगी जब हम cursor को holdings table में library name पर ले जाते हैं
यदि किसी विशेष branch library के लिए url इस field में रखा जाता है फिर opac हमें branch library बताएगा जहां पुस्तक उपलब्ध है
hyperlink to जानकारी प्राप्त करने के लिए mouse को link पर घुमाएं
यह विशेष branch library का पता देगा जहां से पुस्तक जारी की जा सकती है
koha interface पर जाएँ
अगला हमारे पास ip address है
यदि आप koha admin access को किसी विशेष ip address पर प्रतिबंधित करना चाहते हैं तो आप यहां ip निर्दिष्ट कर सकते हैं
अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं
मैं इसे खाली छोडूँगी
अंत में हमारे पास notes field है
यह वह जगह है जहां आप भविष्य के संदर्भ के लिए कोई भी notes भर सकते हैं
ये opac में प्रदर्शित नहीं होंगे
सभी विवरण प्रविष्ट करने के बाद submit button पर click करें
नई library का name libraries पेज पर दिखाई देता है
हमारे मामले में spoken tutorial library
अब देखें कि group library विकल्प का उपयोग कब करें
यदि आप नया group जोडना चाहते हैं तो + new group टैब पर click करें
मान लीजिए कि आपके पास कुछ branch libraries हैंउदाहरण के लिए chemistry library
ऐसे परिदृश्य में group library विकल्प का उपयोग करें
इस group को science library के रूप में name करें जो मुख्य library के अंतर्गत आता है
grouping समानताएं और/या समान विशेषताओं आदि के आधार पर किया जा सकता है
database administrative user के रूप में अपने वर्तमान सत्र से लॉगआउट करें
ऐसा करने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर जाएं और no library set पर click करें
dropdown मैन्यू से logout पर click करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में आते हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने लाईब्रेरी और नए ग्रुप को बनाना सीखा
नियतकार्य के रूप मेंएक नई library बनाएँ और एक नया group बनाएँ
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
विशिष्ट प्रश्नों के लिए forum:
कृपया इस site पर जाएं minute और second चुनें जहां आपको संदेह है
संक्षेप में अपने प्रश्न लिखें
हमारी team में से कोई उस सवाल का जवाब देगा
विशिष्ट प्रश्नों के लिए forum:
spoken tutorial forum इस tutorial पर विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें
इससे अव्यवस्था कम करने में मदद मिलेगी
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद